कॉफी वगैरह का सामान भी रखा हुआ है खाने पीने का समान भी रखा हुआ हैं।

इस फोटो में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक--

गाड़ी वगैरा सब दिखाई दे रही है। पीछे की और एक झूला दिखाई दे रहा है।

आगे बड़ा सी फोटो वीडियो काफ़ी अच्छी दी दिखाई दे रही है ऊपर भी दो लाइटनिंग है वो देखने में काफी अच्छी है पिक्चर को--

दिखाई दे रहा है। ऊपर का जो मौसम है बर्फ वाला--

और वो काफी मात्रा में पब्लिक भी आई हुई हैं और आस पास का जो अ गेट वगैर जो है वो भी दिख रहा है।

एक से दो व्यक्ति भी मुझे सामने से आते और जाते की ओर दिखाई दे रहे हैं।

सामने मुझे अपनी सा भी कुछ दिखाई दे रहा है पिक्चर कि जो क्वाल--

इस फोटो को देखके लग रहा है कि ये एक किसी पार्क की फोटो है जहां पर एक झूला भी लगा हुआ है।